और यहां पे बहुत सारे फूल वगैरा भी लगे होते हैं।

वहां पे एक बड़ा सा दरवाजा भी है।

एक इंसान जो की एक गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है।

इसके पीछे यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है उसके पीछे चाइनीस लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है।

यह इमेज एक लखनऊ मांटेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज की है।

यहां पे दीवाल पे कुछ अच्छे-अच्छे स्लोगन भी लिखे होते --

की यहां पर कुछ बिल्डिंग्स भी हैं।

चटाई वगैरा बिछी हुई है।

और सामने खिड़की के पास भी कुछ सामान पड़ा है लकड़ी का।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां है।

जहां पर कुछ कर्मचारी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी है जैसे कि मिक्की माउस --

यहां पे एक डस्टबिन टाइप का कुछ रखा हुआ है।

यह इमेज भी एक पेट्रोल पंप की है।

यहां पर एक हरे कलर की कारपेट भी बिछि हुई होती।

यह इमेज एक मंदिर का है।

ये इमेज मुझे किसी कैफे की लग रही है।

और में बी ये काफी या चाय के वजह से फेमस है।

और यहां पे जिस पे चाय दी जाती है वो डिस्पोजल के गिलास भी--

और उसके पीछे देखेंगे तो एक बैनर पे लिखा होता है एस_एस_बी इंटरव्यू ।

ये इमेज मुझे किसी चौराहे की लग रही है।

यह इमेज एक चिड़ियाघर की है।

और यहां पर एक शेर होता है जो कि पिंजरे में बंद होता है।

वो देखने में तो यह मुझे एक स्टोर की ही लग रही है।

क्योंकि यहां पर बहोत सारा सामान रखा होता है।

जैसी कि मिक्सी जूसर और कुछ किचेन की एक्सेसरीज ।

और आसमान में बहुत सारे काले बादल छाए होते हैं।

दोनों व्यक्तियों ने सेम रंग की पोशाक पहनी हुई है।

सेम कलर की टोपी भी लगा रखी है।

और यहां पर कुछ बल्लियां है जो की छत से लगी हुई हैं।

एन्ड साइड में बहुत सारी बैरिकेडिंग लगी हुई होती--